यह किसी घर के बेड रूम का दृश्य है जहाँ एक बिस्तर लगा हुआ है और दो लाल कुर्सियां रखी हुई हैं इसमें एसी भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारे पेड़ दिख रहे है और एक रोड जाती हुई नजर आ रही है।

मलयपुर लिखा हुआ है और इस पे नीले कलर का गेट लगा हुआ है और खाली ग्राउंड है।

एक आदमी बैठा हुआ है और एक औरत बैठी हुई है इन दोनों की मूर्ति बनी हुई है यानी की यहाँ मूर्तिकार काम करता है।

इस फोटो में एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है और बहोत सारे बड़े-बड़े पत्थर भी है।

और कार के सामने बहोत सारी बाइक लाइन से खड़ी की गयी है।

इस दृश्य में एक डैम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत तेजी से पानी बेहता हुआ नदी में मिल रहा है।